एक आदमी ने पीले रंग का शर्ट पहना है।

कुर्सियां दिख रही है जो लाल रंग की हैं।

यहाँ पर कुछ कार दिखाई दे रही हैं।